नाप रहा है थोड़ी अगल बगल कुछ घास भी जमी हुई है और छोटे छोटे पौधे हैं।

उपर लाइट लगी है पंखे लगे हुए है और एह जो ऊपर पुरीस फूलों मालों से सजा हुआ नीचे कुछ लोग जो किताबें रखी हुई है और खड़े है उनके पीछे कुर्सियों मे बैठे हुए है।

एक सामने बड़ा सा मकान बना हुआ जिस मकान के सामने बड़ा स मैदान है जिस मैदान मे हरी घास मे एक गाड़ी खड़ी हुई है अगा बगल कुछ हरे पेड़ पौधे भी दिखा ये है बादल सफेद और काले है।

और खिड़कियां बनी हुई हैं परदे लगे हुए हैं और सभी लड़किया और लड़के सभी डांस कर रहे हैं।

ऊपर लाइट लगी हुई है पंखे लगे है और कप रखे है।

पेन पेंसिल भी ऊपर टंगी हुई है और काउंटर के सामने एक एक काला कपड़ा पहने एक लड़का खड़ा है उसके अगल बगल मे कुछ लोग बेठे हुए हैं खड़े हैं।

का दुकान लगा हुआ है एक औरत बैठी हुई है और कुछ बड़ी मछली रखी छोटी मछलिया सब से छोटी मछलिया रखी हुई है और काउंटर के अलग बगल कुछ लोग खड़े हुए है।

बस खड़ी हुई है जो बस के सामने एक जो सामने खड़ा हुआ है और वह रास्ता है और अगल अगल कुछ मैदाने बनी हुई है जिसमे हरी घास जमी हुई है और हरे भरे कुछ पेड़ पौधे भी है बादल सफेद है।

कुछ लोग पैदल भी खड़े हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और गाड़िया मैदान मे गाड़ियां खड़ी हुई हैं अगल बगल कुछ हरे पेड़ पौधे भी हैं बादल सफेद है।